इस वीडियो में एक इमारत दिख रही है सुन्दर और इमारत के मुख्य द्वार पर एक स्कूटी रखी हुई है।

इस विडियो में एक हॉल में एक चार पैया गाड़ी है और चार पैया गाड़ी --

है और उसके पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति बाल्टी लिए नीचे बैठा हुआ है।

उसमें मैजिक चार पहिया गाड़ी बोलेरो इत्यादि गाड़ियां स्कूल बस --

और मुख्य द्वार पर कोई नहीं दिख रहा है।

और उसके बगल में तालाब है तालाब में भक्त लोग --

कुर्सी डली हुई है और उसमें गुब्बारे लगे हुए हैं कुछ व्यक्ति --

और उसके छत पर एक सोर प्लेट की प्लेटें लगी हुई है।

खेल का मैदान दिख रहा है उसमें लोग सुबह या शाम के टाइम खेलने --

और घूमने के स्थिति में जो आते हैं और बहुत से लोग --

एक्सरसाइज करते हुआ दिख रहें हैं।

का स्कैनर लगा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की फोटो भी खींची हुई है और वो है --

और उसमे बच्चे खेलते हुए सड़क पट्टी के बगल मे दिखाई दे रहे है।

हरे-भरे रंग के पेड़ें दिख रहे हैं कुछ पौधे औषिधि वाले भी हैं।

ऐसी धुप में एक्सिस बैंक --